हेलो गाइस इस इमेज में एक बॉक्स ऑफिस है जिमे ये एक थिएटर मूवी देखते है जो नए-नए मूवी जो--

इसी इमेज में हमें दिख रखा है एक मॉल जिसमे बड़े -बड़े टॉयज है।

ये वाला प्रोब्लम्स वगैरा सोल्व

ऐसे जी_एस_टी वाला काम वगैरा सब हो--

हमें घूमने का मन कर रहा है हा हा --

हैलो गाइस इस इमेज मे --

बैठ सकते है नहा धो के और खेल सकते है कूद सकते है घूम सकते है।

हेलो गाइस इस इमेज में मुझे --

एक सोफा दिख रहा है कोई ऐसा वैसा सोफा नहीं है यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठते है फोटो खींचाते है।

हमको प्रेजेंट करने आता है शादी का माहौल है मतलब वेडिंग पार्टी --

यह हॉस्पिटल

बट कोई नइ इलाज तो कर रहा है अपना बार बार कोई बस इतता बस मेरी कोई इलाज कर रहा है।

जो शनिवार या बुधवार को खुलता है बचेली का पार्क --

लोग यहाँ घूमने आते हैं शाम के बहुत अच्छा-सा पार्क है वैसे शायद बसेली--